बोहोत सारी टेबल और चेयरे भी हैं और बोहोत सारे लोग आनंद ले रहे हैं।

यहा एक बस है बस सड़क पर खड़ी हुई है बस के किनारे बहुत सारे पेड़ नज़र आ रहें हैं बस के साथ एक पुरुष अपनी तस्वीर खिंचवा रहा है।

यह एक नदी का तट है जिस पर बहोत से लोग पूजा कर रहे हैं और डुबकी भी मार रहे हैं।

यहां एक मोबाइल रिचार्ज की दुकान है यहां पर लोग बहुत सारे लोग अपने मोबाइल एवं टी.वी. का रिचार्ज करवा रहे हैं।

यहा एक मेला है | मेला में बोहोत सारे दुकाने लगे हुए हैं ।

यह एक पुल है पुल के नीचे एक बड़ी सी नदी है जिसके तट पर एक बड़ा सा मैदान है।

बच्चे झूलों पर झूल रहे हैं। कुछ लोग पाक्र में टहलने भी आते हैं।

यह एक कन्स्ट्रक्शन साइट है यहाँ पर बहोत सारे लोग काम कर रहें है।

यहां पर पार्क में कुछ लोग योगा कर रहे हैं पार्क बहोत हरियाली है।

यहां पर कई मशीने भी लगी हुई है कन्स्ट्रक्शन साइड पर मिट्टी रेत बारू और पत्थर भी लगे हुए हैं ।